यहां पर देखिए आपको बाल्टी दिखाई पड़ी है। देखिए बाल्टी में कुछ पानी जैसा रखा दिखाई पड़ रहा है।

यहाँ पर देखिए आपको फर्श पे एक कपड़ा दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए कपड़े पे बहोत सारे फ फ़िशिस रखी हुई हैं। यहाँ पे एक तराजू भी है और बॉक्सस हैं। यहाँ पे और देखिए यहाँ पे बहोत सारे सामान में अ बहोत सारा सामान ए को देख के फर्श में आपको --

यहाँ पे देखिये यहाँ पे एक स्विमिंग पूल दिखाई पड़ स्विमिंग पूल में आपको बीच में देखिये एक छाता दिखाई पड़ रहा है और देखिये आपको दिखाई पड रही है | यहाँ पे देखिये रिंग है रिंग मे देखिये कुछ बच्चे खेल रहे है और देखिये पीछे साइड में आपको बडे बड़े पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं।

यहा पर देखिए आपको एक ए.सी. दिखाई पड़ रही है और देखिए फ्लेट में आपको दो ह स अगल बगल आपको दो हल्के ट्यूबलाइट दिखाई पड़ रही है कैमरा दिखाई पड़ रहा है। देखिए लेफ्ट और लाइट हेंड साइड में आपको दो फ़ोटो दिखाई पड़ रही है। यहां पे कुछ बेग्स और टेबल लगे --

यहाँ पर देखिए आपको दो पोस्टर दिखाई पड़ रहे हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड पे देखिए एक बाइक दिखाई पड़ रही है। नीचे ढलान ढलान गई है। आप देखिए आपको साइड -साइड में छोड़े से बड़े-बड़े पेड़ दिखाई पड़ रहे है। यहाँ पे देखिए छोटी-छोटी घांस भी है देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड कुछ बड़ा सा पेड़ --

यहां पर देखिए आपको बड़ी सी नदी दिखाई पड़ रही है और देखिये नदी का पानी ब्लू ब्लू दिखाई पड़ रहा है। देखिए नदी के इस पार आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए पत्थर में कुछ आपको बड़े-बड़े पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए दसात कुछ मट्टी दिखाई पड़ रही है देखिए मट्टी में छोटी-छोटी घांस दिखाई पड़ी है आप --

यहाँ पर देखिए आपको एक बड़ी सी नदी दिखाई पड़ रही है। और देखिए नदी का पानी थोड़ा सा गंदा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए नदी के आस-पास देखे आपको कुछ ओ ढलान दिखाई पड़ रही है। देखे ढलान में आपको छोटी-छोटी घांस दिखाई पड़ रही है। कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी हैं।